फोटो में एक पुराना घर दिखाई दे रहा है।

काउंटर के ऊपर एक छप्पर है जो इसे ठेले जैसा रूप दे रहा है।

डॉक्टर कुर्सी पे बैठा हुआ है।

व्यक्ति एक कमरे में योग कर रहे है जिसका कलर पीला रंग का है और एक दरवाजा है जो लकड़ी का है।

पानी का एक शांत और स्थिर सतह है।

पत्थर के बीच से पानी का बहना दिख रहा है।

दुकान के अंदर विभिन्न प्रकार का सामान रखा हुआ है।

ये कार दो हजार सत्रह मॉडल की हो सकती है।

दीवार पर एक सफेद रंग का पंखा लगा हुआ है एक फ्रेम में तस्वीर दीवार पर टांगी हुई है।

घर के बगल में एक ट्रक है जो प्लास्टिक से ढका हुआ है।

आकाश में सूर्या की रोशनी दिखाई दे रहे है।